में एक बड़े मेदान में कुछ जगाहों पर पूजा होती दिखाई दे रही है।

इमेज मै सामने एक मूर्ति दिखाई दे रही है।

सामने लाल-लाल स्टूलो पर कुछ मोमबत्तीयाँ जलती दिख रही है हरा फर्श दिख रहा है आकाश में अंधेरा दिख रहा --

जिसमें ईंटें रखी दिखाई दे रहीं हैं दो पुरुष ऊपर दिख रहें हैं घास दिख रही है ईटों की दीवारें दिख रही हैं।

कुछ बड़े-बड़े चट्टानें दिख रही है चट्टानों पर हला हरा नीला रंग दिख रहा है।

ऊपर एक बड़ा पेड़ दिख रहा है एक युवक चट्टान पे खड़ा हुआ दिख रहा है नीला आकाश दिख रहा है।